जो दिखने में काफ़ी सुन्दर और बढ़िया है यहाँ लोग दूर-दूर से आते है इसे देखने के लिए और घूमने के लिए यह एक प्रयोगशाला फो फिजिकैलिटी लैब है।

यह स्टैचू एक हमें आर्मी की दिखाई गयी है जिसमे एक आर्मी गन लिए खड़ा है ।

और यह दिखने में यह एक जिराफ़ का हमें इमेज दिखाया गया है जो दिखने में बहुत बड़ा और बहुत ही सुन्दर है यहाँ दूर-दूर से लोग देखने आते है।